और यहां पर अ पढ़ा नहीं रही हैं बैठी हुई हैं।

यहाँ पे सारे का सारा अ रूम खाली है।

ये एक दुकान है और यहाँ पे गेम के कपड़े रखे हुए हैं अ स्कूल की यूनिफॉर्म है ग्रीन कलर की रेड कलर की ब्लू कलर की --

यह एक ढाबा है जो सेकंड शक्ति--

और हरे बॉक्स के अं वहां पर कम्प्यूटर रखा है।

और ये बोतले रखी हैं बहोत सारे लोग चेयर पे बैठे हुए हैं कंप्यूटर चला रहे हैं।

और दो तीन यहाँ पे कारें भी खड़ी हैं ।

और यहाँ पर मेज में दो आदमी बैठे हैं मेज रखी है सामने उनके और म दो आदमी बैठे हुए हैं।

यह एक रेस्टोरेंट है और यहां पे बहोत सारे डेकोरेशन हो रखा है। यहां बैलून लगे हुए हैं गुलाबी हरे लाल पिले।

यहां पे अं एक हॉल है और उसमें जो हैं अं वो खेला जा रहा है रेकिट --

उधर ये नेट लगा हुआ है और चारों तरफ इसमें बहुत सारे बल्ब लगे हुए हैं।

और भी चीजें और चटनी रखी है यहां पे ल सफेद रंग की लाल रंग की और सामने की तरफ एक आदमी बैठा हुआ है।

और कुछ आदमी वहां बैठे हुए हैं सामने की तरफ खिड़की और पर्दे भी लगे हैं और ऊपर की तरफ पंखा चल रहा है।

ये बहुत बड़ी बहुत पुरानी बिल्डिंग है और यहाँ पर जो है वो फ्री एक कैंप लगाया हुआ था इन लोगों ने --

और यहाँ पे एक बैनर को पकड़ के तीन औरतें खड़ी हैं और दूसरे बैनर को पकड़ के --

और एक आदमी के मुँह पे मास्क है और तीन चार आदमी नीचे बैठे हुए हैं और इसमें चारों तरफ घांस ही घांस लगी हुई है।

ये एक स्कूल है और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के स्टैचू बने हैं मोटू पतलू के स्टैचू बने हुए हैं।

यहां पर बहोत यहां पर एक बहोत बड़ा झूला है जो सीढ़ियो बहोत सीढ़ीये है और बहोत ऊंचा बना हुआ है यहा प--

ऊपर की तरफ बहोत सारी लाइटे है सफेद रंग की और ला पीले रंग की।

बहुत सारे हॉस्पिटल है और यहां पर सब लोग जो है मास्क लगा कर बैठे हुए है और इंतजार कर रहे है अपने नंबर का आने का --

ऊपर की तरफ बहुत सारे बलफ लगे हुए हैं और सामने की तरफ रैक बनी है।

और भी गुटके फुटके तंगे हुए हैं बहुत सारा सामान है जो यहाँ पे है।

सर्किल से बना हुआ है और यहां सीढ़ियां ऊपर जाने के लिए।

अ यहां पे कुछ लोग हैं जो यहां पे काम कर रहे--